और यहां कैट फूड बिलेगा खाना वगैरा मिलता है शायद यहां पे।

ये सड़क पर लोग जा रहे गाड़ी पे ऑटो में।

ये एक चर्च है और ये चर्च में अन ये मैडम कुछ बोरे--

और दूसरे लोग सर लोग उन लोगों को मुबारकबाद दे रहे हाथ मिला रहे वो लोग से और यहां पे नीचे पूरा हरा हरा हैं।

उम्म जंगल के जैसा दिख रहा है ये पूरा झाड़ा झाड़ा है यहां पर।

कपड़ों की वगैरह दुकान दिख रही है और एक बाजू में भी एक बैंक है कोटक बैंक ।

ये एक टायरों की दुकान दिख री और ये यहां पे लिखे ये टायर्स और--

और वहां पर भी कोई लोग एक्सरसाइज कर रहे है जहां और यहां पे फैन रखे हुए है यहां गोले लगे हुए है यहां पर।